ऊपर चों चोंडा सा क्या कहते हैं बॉर्डर दिया गया है और क्या कहते हैं वो फोटो स्पेस फोटो दे रहा है अपना। इस्माइल दे रहा है।

ई शॉप है। जिस पे अलमारी बनी हुई है। इसमे काफी सारी कॉपी किताबे रखी हुई है और कुछ कॉपी किताबे टेबिल पे भी रखी हैं। ।

और म म सर्दी का टाइम है और काफी लहरे बहुत ऊंची ऊंची पानी का कलर ग्रीन कलर का है। देखने में एक अजीब सा दृ --

और रेड कलर की चूड़ी पहनी हुई है और उस बोर्ड पर कुछ लिखा है।

स्कूल है यहां पे सारी टीचर्स खड़ी हुई है साड़ी पहनी हुई है एक लेडिज़ जो हैं वाइट साड़ी पहनी खड़ी हुई हैं ।

एक आदमी बच्चा लिए जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल मे काफी विंडो लगी हुई है हॉस्पिटल मे --

है यहां खाली जगह पड़ी हुई है रोड खाली है।